यहां पे बहोत सारा रोड है कुछ ओवर ब्रीजे है एक करंट पास करने वाला बहुत ऊंचा टावर है।

और ऊपर मे पूरा आसमान है। जिसमें पूरे बादल घिरे हुए हैं नीचे मे पानी है कुछ आदमी हैं और रेलिंग लगाए हुआ है जो की छड़ का है और कुछ बोटे नजर आ रहे हैं।

यहां पे एक टोटो है जो की रेड कलर में है और एक पार्क है और पीछे केला का पेड़ और अमरूद का पेड़ है।

यहां पर एक चर्च है चर्च का कलर है ब्लू कलर और येलो कलर से रंगा हुआ हुए हैं कि---

यहाँ पर एक के दो रूम है दोनो रूम में एक-एक ऑटो लगा हुआ है दो गेट है शटर है और--

ईट है जो की रेड कलर की है नीचे कुछ बहुत सारे आयरन के पाया है और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ओवर ब्रिज बन रहा है ऊपर में आसमान है बहुत सारा खंभे हैं।